यह आदमी का शर्ट का कलर व्हाइट है ।

यहाँ पर एक गेट है और बड़ा सा ग्राउंड है एक पोल है।

और अंदर में बहुत सारे समान रखे हुए हैं चॉकलेट बिस्कुट ।

यहाँ पर एक गाड़ी है जिस पर बहुत सारे बोड़े लदे हुए हैं।

उम बा पीछे ब्लू कलर का बादल है ।